कार है मिरर है ग्लासेस है टॉय है।

कलर कलर कप्स है बॉटल्स है बादाम पाल है।

बड़े पेड़ से छोटा पेड़ से साइड को ब्ल्यू कलर डब्बा है।

रंग रंग है फ्लावर्स येलो कलर फ्लॉवर्स है लाल कलर फ्लॉवर्स है।

पिल कलर टॉवर्स हैं बड़े जेंगल हैं डेट्स हैं।

पांच ट्रक्स है आदमी है एक ट्रक के डोर ओपन करेंगे क्या भी काम करता है।

वैसलीन है फेस वॉश है कामबोर्ड है परफ्यूम्स है।

मछली नहीं छोटा छोटा ग्रेप्स है रॉल हई स्टोनस हई कैक्टस हई लकड़ी है अच्छा है।

इधर फेडरल बैंक बोर्ड है डोमिनोज बोर्ड है।

इधर लाइब्रेरी हैं लाइट्स हैं बड़े बड़े लाइट्स हैं छोटा लाइट्स हैं अच्छा हैं।

इधर बड़े पानी है पानी के ऊपर ब्रिज है छोटा छोटा पिलर्स है राल है।

लकड़ी ऊपर काटी है बंडा है छोटे छोटे बंडा है बड़े बंडा है बड़े कोंडा है।

इधर छोटा प्लेस है प्लेस टाइल्स है दे अ सोफा है टेबल्स है चेयर है व्हाइट चेयर है ब्लू --

इधर छोटा रूम है डोर्स है छोटा अ कबोर्ड है सेल्फ है।

इधर ये डार्क प्लेस है रूम है ड्रिंकिंग के बॉटल हैं बॉटल के साइड क कप्स हैं।

डस्टबिन है मनी प्लांट अ प्लांट है कार्स है लाइट्स है गद्दीश है समाे है पिलर्स है।

रोड है बड़े बड़े लकड़ी है छोटा लकड़ी है अह--

मंदिर हैं स्टेपसे गाड़ीसे एक आदमी लोकल की जाता हैं।

बच्चे और बच्चे है बड़े है कंस्ट्रक्शन शुरू होता है बच्चे और बच्चे है बड़े आदमी है छोटा आदमी है।

कलर पील कलर रेड कलर है छोटा नीचे है बड़े-बड़े पेट्स हैं छोटा छोटा पेट्स हैं अच्छा है।

ये जंगल है मंगल है मैदान है।

इधर बड़े रोड है रोड के ऊपर बड़े बड़े पेड्स है छोटे छोटे पेड्स है शायद एक मैदान है।

करना है गाडी से छोटा छोटा व्हील्स है बड़े व्हील्स है ये वाइट कलर है एक आदमी देखता है।

डेकोरेशन का अच्छा है एक दीप है।

अह बॉल्स है टेडीज है पारा है है वाटर पाइप है है टेडीज हो है।

छोटे छोटा पैट्स है बड़े पैट्स है है दूर साइड एक दिखाई--